अंडर वियर गारमेन्ट शॉप है सामने की तरफ एक रेक बनी हुई है इस रेक मे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए है ये बॉक्स में बहुत सारी सैंडो बहुत सारी टीशर्ट्स बनियान जॉगर्स पेंट--

गार्डन बने हुए है इसमें बड़े बड़े पेड़ पोधे लगे हुए है सामने की तरफ बड़ी सी पानी की टंकी बनी लगी हुई है सामने एक बड़ी बिल्डिंग भी नजर आ--

निच्गे ब्लेक कलर का लांच ऐ ऊपर ब्लेक कलर की टी-शर्ट पहने हुए हे निचे की तरफ इसमे स्टेज बनी हुई स्टेज पे बहुत सारी पगड़ी पड़ी हुई है जो एक सो के टाइम फोड़ी जाती हे पीछे की तरफ इसमें वोल पेपर लग हुआ है।

योगा क्लासेस है सामने की तरफ एक बड़ी सी योग योगा क्लासेस नजर आ रही है जिसमें जमीन पर पिंक कलर की और कलर की मैट बिछी हुई है इनमे पर्सनल मैट भी बीछी हुई है।

कोई व्यक्ति आगे की तरफ से पाइप से इसको ढका रहा है इसमें पानी की बरसात भी हो रही है इसमें चारो तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है इसमें सामने की तरफ बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ आसमान नजर आ रहा है।

यह एक मार्केट है सामने के तरफ एक बड़ा सा मार्केट नजर आ रहा है जिसमें एक सड़क है सामने की तरफ एक चबूतरा बना हुआ है चबूतरे पर एक मूर्ति बनी हुई है उसपे सोलर पैनल भी लगा हुआ है।